इस चित्र में हमें एक गार्डन नजर आ रहा है जिसमें गुलाबी लाल सफेद पीले कलर की फूल लगे हुए तथा स्विमिंग पूल नजर आ रहा है एक अच्छे नजर आ रहा है उसमें।

वेडिंग का डेकोरेशन है यहां पर बहुत सारे व्यक्ति स्टेज पे खड़े हुए हैं कुछ चेयर उन पे बैठे हुए हैं तथा पिंक कलर के परदे लगे हुए हैं।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

और एक गेट भी नजर आ रहा है जो खुला हुआ है। बाइ तीन बाइक नजर आ रही है पेड़-पौधे नजर आ धूप नजर आ रहे है और पेड़ भी नजर आ रहा है।